ये एक इंश्योरेंस सेंटर ऑफिस है सामने में कुछ प्लास्टिक की तरह दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर में कुछ गेंदे के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक किसी का घर बन रहा है जिसमें बहोत सारी बांसे लगी हुई है रॉड लगे हुए हैं।

नीचे में दो पानी के बॉटल्स भी रखे हुए हैं।

इस ऑफिस के ऊपर में एक सोलर प्लेट भी लगा हुआ है।

ये स्टेज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

और बीस के नीचे में कुछ बल्टियाँ भी दिखाई दे रही है जिनका रंग लाल कलर का है।

यह एक गार्डन है जिसका नाम है उत्सव गार्डन सामने में वाइट कलर का एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है उत्सव लिखा हुआ है रेड कलर से और गार्डन लिखा हुआ है ग्रीन कलर से।

ये एक बहुत बड़ा नदी की तरह दिखाई दे रहा है।

नदी में एक नाव खड़ी है जो कि बहुत बड़ी है और उसको रस्सी से बांधा गया है।

डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उन्होंने अपने मुंह पे मास्क लगाए हुआ है।

ऑफिस के सामने है और ऑफिस में कंप्यूटर भी लगा हुआ है।

ये कोई दुकान की तरह दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ समाने रखी हुई अलग अलग कार्टूंस में --

में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

बाहर में दो स्कूटी एक स्कूटी और एक बाइक दिखाई दे रहा है।

ये बड़ा सा हाल है ज जो जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं।

दुकान में कई तरीके की टीवीया दिखाई दे रही हैं।

ये एक मेडिकल एजेंसी है और मेडिकल एजेंसी का नाम है अमय मेडिकल एजेंसी --

ऊपर मे व्हाइट कलर की बहुत सारी छोटी छोटी लाइटें लगाई हुई हैं।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

ये खुला हुआ गार्डन हैं गार्डन में कुछ दूर पर पानी की तरह फैला हुआ है यहां पे।